चित्र में यह नजर आ रहा है कि यहां पर बहोत हरियाली है।

उसके अंदर एक कार लगा हुआ है साइड में दो पिलर है।

चित्र में यह किसी जिम का चित्र नजर आ रहा है जहां पर वर्कआउट के लिए बहुत सारी मशीने रखी गई हैं।

दूर मे एक मंदिर भी नजर आ रहा है।

और पहाड़ों के उधर पेड़ भी नजर आ रहे हैं सामने झरने में नहाते हुए कुछ लड़के नजर आ रहे हैं।

उसके नीचे पीला कलर का बहुत बड़ा पोस्टर है जिसमें कुछ बनाया गया है।

अंदर कुछ डब्बे रखे गए है।

और एक पेड़ भी दिखाई पड़ रहा है आसमान नीला दिखाई पड़ रहा है।

चित्र में यहां एक लंबी सड़क दिखाई पड़ रही है जिसके अगल बगल व्हाइट कलर का बॉर्डर बना हुआ है।